और सामने ही बहुत सारे आदमी खड़े हुए हैं जो की इधर और उधर जा रहे हैं।

और सामने ही लोहे की ग्रिल लगी हुई है।

यहां पर ये रेड और हरी और गुलाबी और नीले कलर की है यहां पर बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं।

सामने और एक मकान है।

और यहां पर खोल रखी है।

यह एक मार्केट है मार्केट में बहुत सारे आदमी खड़े हुए है।

और यहां पर एक तार भी दिख रहा है।